जहां पर दो फिलिंग स्टेशन बड़े हुए हैं।

जहां पर लोग कसरत करने आते हैं आप देख सकते हैं यहां काफी तरह की मशीनें --

पेट्रोल पंप पर लाइटिंग अच्छी हो रखी है यहां वो फीलिंग --

जो वाइट और गुलाबी कलर की है ऊपर पूर्णिमा यूनिवर्सिटी का बोर्ड लगा हुआ है।

और यहां एक लड़का खड़ा है।

जो एक कैफे टाइप लग रही है यहां पर काफी कुर्सी टेबल लगे हुए हैं।

इस फोटो में आप भंडारी हॉस्पिटल देख सकते हैं।

जिसपे नीले कलर का कांच लगा हुआ है।

जहां काफी अलग अलग काउंटर बने हुए हैं।

जहां पर अलग अलग तरह की सब्जियां रखी हुई है आलू टमाटर नींबू प्याज हमे नज़र आ रही है।